और इसमें पीले कलर की प्लेटफोर्म भी लगे हुए हैं।

कहीं ओपन जिम हुआ करते हैं कहीं सोशल जिम होते हैं लेकिन जिम होते हर जगह हैं।